सफेद रंग की दीवार के पास एक मोटरसाइकिल खड़ा है और बोहोत से प्लास्टिक --

रेलगाड़ी बस स्टॉप पर खड़ी है। चारों तरफ पुरुष और महिलाएं --

छतों पर पखे लगे हुए हैं जोकि सफ़ेद रंग के हैं। भूमि पर टाइलें लगी हुई हैं जोकि क्रीम रंग की हैं और एक आदमी --

डिब्बी पर लड़की बनाई हुई हैं। चारों तरफ पटाखे ही पटाखे हैं। डब्बियों पर पीले हरे नीले रंगों का --

रखा हुआ है। वर्काउट मशीनें हैं| जिनका रंग काला है और दीवारों पर पीले रंग का इस्तेमा --

बैंगनी हरी पीली सफेद हरे रंगों का उपयोग किया हुआ है। सब्जियां बैंगन --

सड़क के किनारे मंदिर में बहोत सी महिलाएं और पुरुष खड़े हैं और मंदिर दो हैं जिनमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं और इनपर --

सड़क के किनारे बोहोत सुंदर चढ़ने के लिए पांच सीढ़ियां लगाई हुई और बैठने के लिए बेंचेज बनाई हुई हैं और --

छतों पर फैन्स लगाए हुए हैं जोकि काले रंग का है और --

टेबल पर थाली है और थाली में फॉक्स और चम्मच रखा हुआ है जिसमें --

कद्दू और पपीता रखे हुए हैं जो कि टोकरियों में हैं और मिठाई की दुकान --

दुकान में लोहे के काउन्टर में बहोत से लाल रंग के डिब्बे रखे हुए हैं। चारों तरफ भूमि पर --

सड़क के किनारे बहुत ही सुंदर दो मंजिला भवन का निर्माण किया हुआ है। जिसमें बहुत ही सुंदर नकाशि की हुई है।

ये एक किराने से संबंधित समान का सामूहिक चित्र है जिसमे --